सब्जी की दुकान रखी है यहाँ पर कार्टूनों में हरे बंद गोभी सब्जियां जहाँ बेगन गोभी और गाजर लहसुन सब कुछ रखा है।

स्टोर लग रही है जिसपर एक लड़की का पुतला लगा हुआ है वो फ्रॉक पहने हुआ है यहाँ पर टाइल्स भी दिखाई दे रही है यहाँ पर बोहत सारी कपड़े रखे दिखाई रहे है ।